में बहुत सी वनस्पति उगी हुई है।

बिछा हुआ एक खम्भा लगा हुआ है।

जिसके ऊपर धारीयोधार संरचना बनी हुई है।

रोड के दोनों ओर हरी हरी घास लगी हुई है।

रोड के चा पास वृक्ष भी लगे हुए हैं।

यहां एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके नीचे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और पास में स्कूटर है।

बिल्डिंग की खिड़कियों में कांच से किसी की--

रूम में सफेद रंग के रंग पोताई की हुई है।

ये एक जिम सेंटर है जहां पर जिम करने वाले यंत्र रखे हुए हैं।

जो कि सफेद रंग की बनी हुई है।

इसके ऊपर किसी पक्षी का स्टेच्यू रखा हुआ है।

बिल्डिंग का प्रवेश द्वार खुला हुआ है।

दो कुर्सी और एक मेज रखी हुई है।

इसके बगल में एक और बिल्डिंग बनी हुई है।

जिसमें एक टेबल पड़ी हुई है और बहुत सी वस्तुएं उसपे रखी हुई हैं।

दुकान के अन्दर दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें सजावटी पौधे लगे हुए हैं जिनको शंकु आकार आकार में काटा गया है।

कुछ बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह एक पार्क है जिसमें बहुत से छोटे और बड़े--

एक घना सा वन दिखाई दे रहा है जिसमें बड़े बड़े वृक्ष है।

दूर भूरे रंग का आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक रोड दिखाई दे रही है जिसके बगल में एक पीले रंग की दीवार दिखाई दे रही है जिसमें हल्की सी जाली लगी हुई है।

पीले रंग की पुताई ऊपरी सतह पर है।

इसके सामने ढ़ेरों लाल रंग के पुष्प रखे हुये हैं और बगल में पीले रंग के पुष्प रखे हुये हैं दो टोकरियों में।

नीचे एक नीले रंग का ड्रम दिखाई दे रहा है।

सामने एक जालीदार गेट दिखाई दे रहा है।

यह एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत लंबी सी मेज रखी हुई है।

लाइब्रेरी के छत पे लाइटिंग की गई है।

कार की हेडलाइट और दो पहिये दिखाई दे रहे हैं जोकि काले रंग के हैं।

गेट के सामने गार्ड्स लगे हुए हैं।

गेट के भीतर एक ट्रक प्रवेश कर रहा हैं।

इसके सामने एक महिला खड़ी हुई है।

यहां पर कुछ बच्चे टहल रहे हैं छोटे से।

पे सीट पे कुछ लोग बैठे हुए हैं।

दीवार पर स्पीकर दिखाई दे रहा है।

नी का जलाशय है जिसमें बहुत सा पानी भरा हुआ है।

इसमें एक नाव तैर रही है जिस पे कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं।

जिसकी चोटी पर एक झंडा रखा हुआ है।

दूर बहुत से बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं जो कि हरे रंग के हैं।

पर मैदान में कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और कुछ छोटे से बच्चे दिखाई दे रहे हैं जोकि खेल रहे हैं।

एक महिला का सफेद रंग का दुपट्टा दिखाई दे रहा है।

रोड पे घास लगी हुई है इधर उधर।

रोड पे नीले रंग के पैकेट पड़े हुए हैं।

कि जुट के बोरों पर रखी हुई है।

कुछ पीले कुछ लाल और कुछ काले रंग के डिब्बे हैं।